kturtle के special commands के इस tutorial पर आपका स्वागत हैं
इस tutorial में हम learn कमांड और random कमांड के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स os वर्ज़न 1204 और kturtle वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
मैं मानती हूँ कि आपको kturtle के कार्य की बुनियादी जानकारी है
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए कृपया हमारी website
एक नया kturtle application खोलें
dash home पर click करें
search bar में kturtle type करें
kturtle icon पर click करें
पहले learnकमांड देखते हैं
learn एक विशेष command है जिसका उपयोग अपने निजी commands बनाने के लिए होता है
learn command input लेकर output देती है
देखते हैं कि नयी command कैसे तैयार की जाती है
स्पष्ट देखने के लिए मैं program text zoom करती हूँ
square बनाने के लिए editor में code type करें
repeat 4 curly brackets में
यहाँ number 10 square की लंबाई को उल्लिखित करता है
अब learn commands का उपयोग करके square बनाने के लिए शामिल commands को सीखते हैं
हम square बनाने के commands के इस set का name square रखेंगे
जो command सीखनी है उसके name के बाद learn command है ऐसी स्थिति में वह square है
निम्न code type करें
learn space square space $x
curly brackets जोड़ें
10 को $x से replace करें
new command जिसे हमने परिभाषित किया है square है
square का size स्थापित करने के लिए square एक input argument $x set है
ध्यान दें कि जब आप यह code रन करते हैं square कोई भी output नहीं देता
learn command square को सीख रहा है जिसका वो बाद में उपयोग करेगा
square command अब code के बाकी हिस्सों में एक सामान्य command की तरह इस्तेमाल की जा सकती है
मैं यहाँ कुछ और पंक्तियाँ जोड़ती हूँ
type करें
square 100 command का उपयोग करके turtle 100 आयाम का square बनाता है
अब code run करें
turtle canvas पर square बनाता है
अब 100 by 50 replace करें
फिर से रन करें
turtle फिरसे 50 आयाम का दूसरा square बनाता है
कृपया ध्यान दें कि इस command का उपयोग इस program के दायरे में ही किया जा सकता है
मैं editor से वर्तमान code मिटा दूँगी
canvas clear करने के लिए clear command type करें और run करें
आगे हम random command के बारे में सीखेंगे
random command input लेता है और output देता है
random command के लिए syntax random x y है
जहाँ x और y दो inputs हैं
x न्यूनतम output और y अधिकतम output निश्चित करता है
output randomly x और y के बीच चुनित संख्या है
application में उपयोग के लिए random command डालें
मेरे text editor में पहले से ही एक code है
मैं code समझाऊँगी
reset command turtle को default पोजीशन में sets करता है
यहाँ command random 120 random संख्या का चयन करता है जो उसके समान या 1 से अधिक और उसके समान या 20 से कम है और उसे variable x के लिए प्रदान किया है
repeat command और curly brackets में लगे commands एक वृत्त बनाना शुरू करते हैं
मैं text editor से code copy कर उसे kturtle के editor में paste करूँगी
tutorial रोकें और अपने kturtle editor में program type करें
program टाइप करने के पश्चात tutorial पुनः आरंभ करें
जब हम code रन करते हैं
turtle canvas पर 1 और 20 दरम्यान के त्रिज्या के साथ एक वृत्त बनाता है
इस code को कई बार निष्पादित करते हैं
आप देख सकते हैं की हर बार विभिन्न size के वृत्त बने हैं
हर समय जब भी आप इस code को निष्पादित करते हैं canvas पर विभिन्न त्रिज्या का वृत्त बना है
अब उदाहरण में learn और random दोनों commands का उपयोग करते हैं
मैं editor से वर्तमान code मिटा दूँगी canvas clean करने के लिए clear command type कर run करुँगी
text editor में मेरे पास पहले से ही एक program है
अब मैं code समझाऊँगी
reset command turtle को default position में sets करता है
canvassize 300300 canvas की प्रत्येक चौड़ाई और ऊंचाई को 300 pixels में sets करता है
$r $g और $b तीन variables हैं जिसमें मैं 0 और 255 के बीच random values निर्दिष्ट कर रही हूँ
canvascolor $r $g और $b command में
पहले चरण में redgreenblue संयोजन को निर्दिष्ट किए हुए variables आर जी और by से replaced किया गया है
canvas color randomly set होता है जब यह command निष्पादित होती है
$red $blue $green variables के अन्य set हैं
जिसमें random values 0 और 255 के बीच randomly निर्धारित की हैं
pencolor $red $blue और $green redbluegreen संयोजन values variables से replaced की हैं
$red $greenऔर $blue जिनमें random values पहले चरण में निर्दिष्ट की हैं
pen का रंग भी randomly set होता है जब command निष्पादित होती है
penwidth 2 pen की चौड़ाई 2 pixels में sets करता है
आगे मैंने वृत्त बनाना सीखने के लिए code प्रविष्ट किया है
यहाँ $x वृत्त के size का प्रतिनिधित्व करता है
repeat command के बाद curly brackets में code वृत्त बनाता है
commands का अगला set है go commands के बाद circle commands set है जो निर्दिष्ट आकारों के साथ वृत्त बनाती है
उदाहरणस्वरूप : circle with size 5 5 साइज के साथ go कमांड में x और y पोजिशन पर निर्दिष्टित निर्देशांक पर वृत्त बनाता है
प्रत्येक वृत्त के लिए मैंने canvas पर भिन्न positions को निर्दिष्ट किया है
मैं text editor से code copy करके उसे kturtle editor में paste करूँगी
tutorial रोकें और अपने kturtle editor में program type करें
program टाइप करने के पश्चात tutorial पुनः आरंभ करें
मैं इस code को fullspeed में निष्पादित करूँगी
run option में उल्लिखित किसी भी गति में आप इस code को निष्पादित कर सकते है
मैं यह code कई बार रन करूँगी
आप pen color और canvas color की randomly set values में अंतर देख सकते हैं
प्रत्येक निष्पादन में pen और canvas के रंग में हुए बदलाव note करें
आप जितनी बार चाहें उतनी बार code निष्पादित कर सकते हैं और pen और canvas के randomly set values के बदलाव note कर सकते हैं
इसी के साथ हम tutorial के अंत में आ चुके हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने learn command और * random command के बारे में सीखा
हल करने के लिए एक नियतकार्य के रूप में
learn कमांड का उपयोग करके पंचभुज pentagonवृत्त square आयत rectangle
अपने कैनवास के चारों कोनों पर षट्भुज और
canvas के centre में एक वृत्त बनाएँ
random command का उपयोग करके विभिन्न रंग तैयार करें और
अपने geometric आकार और canvas को customize करें
इस लिंक पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
यह script it द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई से अब मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद